की एक शेर का पुतला है और एक हिरण का पुतला भी है ।

इसमें पीछे दीवार में कुछ बोर्ड भी टंगे हुए और नीचे एक गेट दिख रहा है ।

जो नीला कलर का है साइड में दूसरे गाड़ी में भी लाइट लगा हुआ है।

और साइड में ड्रावर भी है। ड्रावर के ऊपर एक हीटर लगा हुआ है।

कलर में नीचे रेड कलर भी है। ऊपर इसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है।

एक तीन मंजिलें बिल्डिंग है जिसके नी --

तरफ बहुत सारे बैंक के पोस्टर दिख रहे हैं और ऊपर तीन ए.सी. दिख रहे हैं।

बहुत बड़ा दो गेट है एक साथ जिसके ऊपर दो एल.ई.डी. लाइट लगा हुआ --

उसके सामने एक लाइट लगा हुआ है पीछे की तरफ और एक मंदिर है।

खंभे के द्वारा लगाया गया है।

दो पैर दिख रहे हैं जो एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है जिसमें कुछ बैंडेजेज लगा हुआ है और पैर में --

और एक खिड़की है जिसमें पर्दा लगा हुआ है।

दो रेल पटरी दिख रहा है और एक रेलवे फाटक बना हुआ है।

तीन बच्चियाँ हैं जो डांस कर रही हैं पीछे की तरफ है ।

कुछ एल.ई.डी. बंद है और कुछ चालू है।

जहां पर पेंटिंग कर रहा है वहां पर छोड़कर और पेंटिंग की जगह में कुछ व्हाइट व्हाइट लगा है।

साइड में एक आदमी भी खड़ा हुआ है ऊपर से चार तार भी गया हुआ है ।

और पीछे के तरफ से रेलवे स्टेशन भी है।

खम्बे के ऊपर तार लगा हुआ है और खम्बे में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक फोटो भी है।